सफेद और पिंक कलर का है।

कुछ चेयर ये सब रखे हैं।

वो दूसरा वाला भी जूता पहन के है।

एक चेयर में एक लड़का बैठके है। मिरर शेल्फी ले रहा है। पीछे में टॉवेल है।

ये तस्वीर में हमको एक दुकान दिखाई दे रहा है।

बीच में टिशु रखे हैं ये जो रेस्टोरेंट है उसमें लाइट ऑन करके।

ये तस्वीर में हमको एक रूम दिखाई दे रहे हैं।

ये जो एक ऑफिस है यहां पीछे में बहुत ज्यादा पेपर चिपकाया हुआ है।

और ये जो बैकग्राउंड है वो जो काला है।

ये अंदर में जो स्टाफ लोग काम कर रहे।

ऊपर में पंखा और लाइट सब ऑन है।

यहां बच्चा लोग खो खो खेल रहे है।

नीचे में जो खुला जमीन है जिसमें छोटा छोटा पत्थर सब है।

ग्रास है छोटा छोटा। बड़ा बड़ा पत्थर है। छोटा छोटा पत्थर सब भी है।

उसका कलर जो थोड़ा रेड और ऑरेंज है।

ये कमरा में जो सोफा सेट रखे हैं।

रास्ता भी है लेकिन अभी सब दुकान ये सब जो बंद है।

सामने में एक आदमी खड़ा हो के ग्रीन कलर का शर्ट पहन के और माथा में टोपी पहन के।